यहाँ पे बहोत सारे लोग खेलने के लिए आते हैं। यहाँ पर बहोत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ पे शो ओ शेरवानियों की फोटो लगायी गई है। ये शेरवानी आ को अच्छे से यहाँ पे रखा गया है। ये शेरवानी शोरूम मे रखी हुई है। यहाँ पे बोहोत अच्छे से रखी गई हैं।

यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुऐ है यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए है यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ दिख रहे है ।